ये फोटो कोई रेस्टोरेंट का फोटो लग रहा है यहां पर--

ये फोटो कोई खिलौना के दुकान का फोटो लग रहा है।

और फूल तोड़ने का काम हो रहा है कुछ लेडिस लोग भी है कुछ जेंट्स लोग भी हैं।